सूरज दिख रही है छाता --

लाइटे भी दिख रही है एक कुर्सी दिख रही है।

दो लोगों बैठे दिख रहे हैं।

बहुत सी किताबे दिख --

पेड़ पौधे दिख रहा है बहुत से आदमी दिख रहा है।